और यहां पर दो आदमी खड़े हैं पीछे एक आदमी बैठा है एक--

पीछे घर दिखाई दे रहे हैं सफेद और घरों के पास बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

कमरे के अंदर सामने एक ट्यूबलाइट जल रहीं हैं और तरह तरह के गुब्बारें हैं यहाँ पर--

इस फोटो के अंदर पीछे बहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

ये एक बहोत बड़ी गाड़ी है ऊपर कुछ जे_सी_बी की तरह कुछ गाड़ी चल रही है।

यहां एक आदमी बैठा है आदमी के टी शर्ट पहनी हुई है और पीछे बहोत सारे--

नीचे दुकान के आगे कुछ फर्नीचर बनने मे लकड़ी की अलग अलग टोकरी--

और यहां पर छोटे छोटे कैरेट रखे हुए येलो कलर के पैकेट रखे हुए है।